यहां पर हमें बहुत सारी बुके किताबे रखी हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे रजिस्टर भी हमें एक के ऊपर एक जमे हुए दिखाई दे रहे है बहुत सारे रैक के रैक बने --

हमें यहां पे एक सोफा रखा हुआ दिखाई दे रहा है लकड़ी का और उसके साइड में ह--

ये कोई रेस्टोरेंट की फोटो है जहां पर बहोत सारी ब्लैक कलर की--

ये टेबल रखे हुए हैं कुर्सी रखी हुई हैं और टेबलों पे हमे कांच के ग्लास रखें हुई दिखाई--

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है जहां से सूर्य की रोशनी बहुत पड़ रही है।

पानी य पड़ती हुई दिखाई दे रही है साइड में हमें पुल बना हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर--

नीचे हमें साइड में थोड़ी सी घास भी दिखाई दे रही है ऊपर हमें चार पांच तार दिखाई दे रही हैं।

हमें यहां पर एक अलमारी रखी हुई दिख रही है जिसमें एक ताला पड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा--

ये कोई मशीन की फोटो है जो की खेती के काम आती है जो की रेड कलर --

पेड़ लगे हुए थे ये पेड़ सूख चुके हैं और इनकी पत्तियां नीचे गिर चुकी है।

पेट्रोल पंप की ये फोटो हमें दिखाई दे रही जहां पे एक बहोत बड़ी कार हमें खड़ी--

चार पांच हमें आदमी दिख रहे हैं एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिख रहा है जोकि ऑरेंज कलर का है उसके पीछे हमें ट्राली भी लगी हुई दिखाई दे रही है एक बाइक हमें यहां पे खड़ी हुई दिखा--

और हमेे शटर भी दिख रही है और ये साइड में हमें दुकान दिख रही है बहुत सारे--